यह एक कार्यालय नजर आ रहा है जिसका नाम राजकीय पॉलिटेक्निक लखीसराय है।

यह एक नदी है जो की बेहद खूबसूरत है। बहुत बड़ी नदी है इस नदी में बेहद पानी भरा हुआ है।

खाली अलग-अलग तरह की मशीने रखी हुई है।

यह एक मेडिकल है जिसका नाम भरद्वाज मेडिकल हॉल है यहाँ हर तरह की दवाइयां मिली जाती है।

इसके द्वारा हम अपना वेट लॉस या अपनी बॉडी को बना सकते है।